और दूर से एक छोटा सा घर जसा दिख रहा है जो की वाइट कलर का है पेड़ पौधे दिख रहें --

लैपटॉप रखें हुए हैं यहाँ पर अच्छा लग रहा है।

पत्तर दिखाई दे रहें हैं और ऐसा लगा रहा है की कोई पहाड़ है यहाँ पर।

पानी यहाँ से झरना जैसा गिर रहा है।